गाड़ी खड़ी हुई है और सामने देखेंगे एक और गाड़ी खड़ी हुई है जो शायद कचरे की गाड़ी है और देखेंगे हम पेड़-पौधे भी लगे है यहाँ पे और कुछ लकड़ियाँ वगैरा भी पड़ी हैं साइड मे।

ये इसमे हम देख रहे है की यहां पर शायद इवनिंग का टाइम है ऊपर की तरफ से आसमान नजर आ रहा है।